बच्चे यहां पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं बीच में बिजली का खंभा दिखाई दे रहा है चारों ओर--

लड़की लड़को के कपड़े टंगे हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर बच्चों के डायपर --

बहोत सुंदर सा ग्रीनरी गार्डन दिखाई पड़ता है यहां पर जाले जालों से पूरा कवर किया गया है यहां की मिट्टी में--

इसका नाम बलूर घाट एयरपोर्ट नजर आता है।

काउंटर पर रखा दिखाई दे रहा है नाई अपने मिरर के सामने खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

अह बादाम शेक की रेहड़ी दिखाई गई है यह ऑन रोड किनारे पर खड़ी हुई--

एक कलरफुल सी तस्वीर है यहां पर।

अ यहां पर दवाइयां बॉडीकेयर समान--

घर का इस्तेमाल करने वाला सामान नजर आ रहा है।

यह तस्वीर हॉस्पिटल की नजर आ रही है जैसा कि आप तस्वीर देख कर ही समझ पा रहे हैं कि यह एक हॉस्पिटल की तस्वीर है।

दो से तीन एंबुलेंस खड़ी हुई हैं एंबुलेंस के साथ ही--

गाड़िया चलती हुई बच्चों को झुलाती हुई नजर आ रही है मेले में खाने पीते हुए--

और नीचे बहुत दूर थोड़ी सी दूरी पर एक घर दिखाई दे रहा है वह बहुत बड़ा नुक्कड़ का घर है।

सैमसंग वीवो ओप्पो जैसी कंपनीस के अलग अलग ब्रांड के अलग अलग--

और पीछे एक लेडीज भी नजर आ--